सारी चीज सही की जाती है। एक बड़ा सा पंखा भी दिखाई दे रहा है। ऊपर टीन शेड भी दिखाई दे रहा है।